यहाँ पे पहाड़ है जंगली पौधा सब है छोटा-छोटा और शाम का समय है। इधर बाउंड्री है इसमें एक आदमी दिखाई तो दे रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और बहोत सारा पौधा है छोटे-बड़े और सूखा हुआ भी।